साइड में पर्वत है जोकी साइड में कोयला खदानों के चलते रोड बहुत खराब हो चुके हैं बाइक चलने की स्थिति में नहीं है।

ये बहुत अच्छी फ्री मॉल है इसमें बहुत से लड़के काम कर रहे हैं जो की शादी के पार्टी या वगैरा में किए जाते हैं।

ये पत्थर बहुत अच्छी और बेहतरीन दिख रही --

कुछ व्यक्ति नीचे उतर के पानी में पैर हाथ धो रहे हैं लाइटिंग अच्छी है और कई कई--

लिखे हुए हैं जो इसमें पिलर का लगाए हुए कई डिजिनर्स के चलते में ये खराब हो चुके हैं।

सर द्वारा ये दिए जाते हैट्रेनर के द्वारा अच्छी शाबाशी के ई में उल्लेख किया जाता है।